डेकोरेटिंग किया गया है गुब्बारे से जो रेड कलर का है और वो उसका जो शेप है वो हार्ट शेप --

और आप में भी एक कस्टमर साइकिल खरीद लिया है और वो उसके मुँह पे मास्क लगा हुआ है और वो साइकिल --

जैसे की ग्रीन अ क्रीम कलर है रेड है येल्लो है मल्टी कलर का है इसमें अ --

जैसे कि चूड़ी बिंदी शीइइ है क्रीम मतलब कॉस्मेटिकस जितने भी सामान होते है वो सारे यहां पे अवेलेब --

जो कब्ज होता है वो खुला हुआ है | अंदर से बहुत सारे वायरिंग किया हुआ है जो देखने में एक दम भयानक लग रहा है | ट्रांसफार्मर से जो है --

मकान बन रहा है जो ढलाई चल रहा है | यहाँ पे सारे लेबर सब है वो सीढ़ी --

होम वर्क पूरा कर रहे है और मैडम विजिट में है आगे-पीछे देख रही है की सब बच्चे --

इक बस भी लगे हुए है साइड से।

एक लेडीज है इसका जो हेयर स्टाइल है वो सबसे हट के है।